लकड़ी के मदद से इसके रेख बने हुए हैं जिसके अंदर बहुत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं।

लोहे के एंगल के मदद से ऊपर सीलिंग बने हुए हैं जिसके ऊपर करकट बिछाए गए हैं।

गाड़ी का कलर लाल कलर से पेंट किया गया है इसके ऊपर डेंजर एक्स खतरा लिखा हुआ है।

जो वाइट एवं येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं।

जो ब्ल्यू कलर के टी शर्ट पहने हुए हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है।

जिसके चार पैर दो सींग तथा दो आंख भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर लोहे एवं बॉस के मदद से इसके छज्जे को खड़ा किए गए हैं।

इसके दीवाल ईंटे की मदद से बने हुए है।

यहां पर एक आदमी फोटो खींच रहे हैं जिसके हाथ में डी_एस_एल_आर है।

यह ठेले में बादाम भी दिखाई दे रहे हैं।

तथा इसके बगल में एक गोल्डन कलर के प्लेट रखें हुए हैं जिसके ऊपर दिए जल रहे हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है लकड़ी एवं शीशे के मदद से इसके अलमारी बने हुए हैं।

जिसमें बहुत सारे फल दिखाई दे रहे हैं।

जो सिल्वर एवं ब्लू कलर के दिखाई दे रहा है।

के हाथ में प्रेशर दिखाई दे रहा है।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

कलर पीला एवं हरा तथा ब्राउन भी दिखाई दे रहा है।

एलमुनियम एवं शीशे के मदद से इसकी खिड़की बने हुए है।

उसके दीवाल में ब्लू कलर के कपड़े लगाए गए हैं।

इसके बगल में एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

यह एक होटल का दृश्य है।